पर सेंटिंग ठुक रही है लोहे की रॉड्स बांधी जा रही है कुछ समान यहाँ पड़ा हुआ है कुछ लोग काम कर रहे हैं कुछ खड़े हुए हैं पीछे की तरफ बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं ।

यहाँ पर मकान बन रहा है एक लड़का खड़ा हुआ है बीच में जिसने ब्राउन कलर के शूज एक जीन्स पहनी हुई है वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

ब्लाक कलर का चश्मा लगाया हुआ है। ब्लाक कलर के उसके बाल है। और उसने एक बेग टांगा हुआ है | पीछे की तरफ भी मकान बने हुए बहुत सारे पेड़ लग--

एक बड़ी सी कार आई है जिसके ऊपर फ्लावर से डेकोरेशन किया गया है बोहोत सारे लोग खड़े हुए है बोहोत भीड़ हो रही है पक्की सड़क बनी हुई है रात का टाइम --

झंडे का कलर ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन है सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमे बहुत सारे खिड़की दरवाज़े लगे हुए--

एक डब्बा रखा हुआ एक कटोरा रखा हुआ है इसके बाल ब्लैक कलर के इसके बालों में ऑरेंज कलर की क्लिप् --

सामने एक बड़ी सी बरमला नज़र आ रही है जिसमें वहोत सारे वाइट कलर के फूल लगे हुए है रेड और पिक येल्लो कलर के फूल लगे हुए है वहोत सारी बोरिया रखी हुई है एक आदमी ने येल्लो कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।

पीछे की तरफ लाइट्स लगी हुई है एक बल्ब लगा हुआ है दिन का टाइम है जल--